उसके साथ यहाँ पर एक साथ मैं ही एक --

सामने ही कुछ मोमोज लगे हुए हैं सामने कुछ मेनू लगे हुए हैं।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

यहां खड़े हुए हैं कुछ लोग सामने ही कुछ दिखाई दे रहे हैं।

जो कि बैनर लगे हुए हैं इस एक बैनर के ऊपर अं--

सामने कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं जो की बहोत ही अच्छे तरीके से कम कर रहे हैं।

यहां पर एक नर्सरी लगी हुई है जहां पर की बहोत अच्छा नर्सरी का व्यू भी दिख रहा है।

उसके साथ कुछ लोग यहां पर बैठे हुए हैं।

कुछ आदमी ये लोग बहोत अच्छे तरीके से हिरन को देख रे हैं।

गेट के ऊपर बहोत ही बड़ा एक जंगले का जाल बनाया गया है।

मंदिर का गेट है जहां पे तीन गुंबद बने हुए हैं उसी के नीचे गेट है जोकि--

यहां पर बहोत ही अच्छा मंदिर के बाहर एक काले रंग की एक्टिवा खड़ी हैं।

कैमरा है बहोत स्टूडेंट खड़े हैं और यहां पर म सामने टीचर खड़ा है और स्टूडेंट टेबल पे खड़े है कुछ --

पार्क के बाहर जो भी खड़ी दिखाई दे रही है।

यहां पर बहुत ही अच्छा व्यू ये इस फूल का जो व्यू --

लाल रंग ये फूल और व्हाइट कलर के इसके पत्ते है।

अपना सर कटवा रहा है साथ में ही ये फोन पे लगा हुआ है फोन पे फोटो खींच रहा है।